और तेल वगैरा हैं और भी बहोत सारी चीजें है यहां।

मांसाहारी दुकान है यहां पे कई लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं कई लोग मांसाहारी काट रहे माँस मुर्गा बकरा --

और सफेद और काले रंग की गाय है हरे कलर की रस्सी पे मिट्टी में खड़ा कर रखा है इस गाय को।

पक्षियों की जन पक्षी तोते कबूतर पैरट वगैरह जो नकली मिलते हैं इस दुकान पर --

तरीके की केबिन बना रखे है ऊपर एक लड़की भी खड़ी हुई है।

इसने होटल बना रखा है थोड़ी सी टाइप में यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं कॉफी --

ये स्ट्रेट बैंक ए_टी_एम है यहां पर कई आधुनिक कई औरते--

सेठ मीरा उन सोसाइटी द्वारा संचालित है शिक्षा विद्यालय है मीरा भवन आदर्श नगर जयपुर तिस --

यह जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये एयरपोर्ट है ये बहोत बड़ा एयरपोर्ट है यहां पे।

ये यहां पर रंगोली बना रहे हैं ये एस्ट्री जैस्मिन पब्लिक स्कूल है ये ये स्कूल ब्रह्मपुरी में है जयपुर में स्कूल है यहां पर --

न्यापर नकि गोला सा गुलाबी रंग भर पत्तियों में हरा रंग भर रहे है यहां पर रंगोली बना रहे।